तीनगो हई चारगो हई पांचगो हई छगो हई सातगो आठगो नवगो दसगो बहुत आदमी हई लड़कियों हई गाड़ियों हई एकगो गाड़ी दु --